यहां पर आप देख रहे हैं एक लड़का अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रहा है।

यहां पर बहोत सारे मंदिर बने हुए है और यहां पर मुझे लगता है कोई फंक्शन होगा।

लड़की की जो है वो बहुत अच्छी नजर आ रही है जैसे --

ये हरी ओम है जहां पर गोलगप्पे रखे हुए हैं और लोग गोलगप्पे बहोत अच्छे से खाते हैं।

एक पंखा भी लगा हुआ है जो हवा देने का काम करता है जो बहोत अच्छ--

इसमें बहोत सारे बोतले रखे हुई हैं जैसे हम देख रहे हैं।

स्प्राइट भी है स्लाइस भी है पेप्सी भी है थम्ब्स उप भी है।

ये एक डाबा है प्योर वेज जावा डाबा ट्वेंटी फोर खुला रहता है।

और दर्पण बना हुआ है पीछे वहां पर आप देख रहे है रेलिंग भी लगी हुई है।

ये एक मन्दिर है मन्दिर पर एक लाइट भी लगी हुई है और एक सांफ भी बने हुए हैं।

ऑरेंज बैग भी रखा हुआ है एक पंखा भी लगा हुआ है और कुछ लाइटें भी लगी हुई है।

और उधर स्टेज पर एक लड़का खड़ा हुआ है और एक टीचर भी खड़ा हुआ है जो कुछ समझा रहा है।

यहां आप देख रहे हैं एक फैक्ट्री है फैक्ट्री पर टीन पड़ा हुआ है चारों तरफ ऊपर भी नीचे भी बराबर में भी--

यहां पर मुझे लगता है कुछ बनाने की तैयारी चल रही है कुछ मजदूर भी काम कर रहे हैं और एक --

उधर आप देख रहे हैं बहोत सारी ईटे रखी हुई है जो इसमें ले--

और जो यहां पर आप देख रहे हैं लोग यहां पे दूर दूर से आते हैं पूजा करने--

और ये बाइक पर कहीं जा रहा होगा और दो लड़के भी दिखाई दे रहे हैं एक उधर और एक उधर और एक बाहर बाइक भी खड़ी हुई है।

शीशे भी लगे हुए हैं और ए_सी भी लगे हुए हैं और पंखे भी लगे हुए हैं नहीं है और ये बहुत ही अच्छी दुकान है।

यहां पर आप देख रहे हैं कुछ लाइटें भी लगी हुई है जो वाइट कलर की है।

अंदर कुछ कुर्सियां भी पड़ी हुई हैं और अंदर कुछ लाइटे भी दिखाई दे रही है और कुछ पंखे भी लगे हुए हैं।